और ऊपर आसमान एकदम खाली है माशाल्लाह क्या बिल्डिंग है ऐसे कारीगर के तो हाथ काट देने चाहिए।

और ये है जो कि पौधे नीले कलर में आती है और मिल जा--

कुछ लकड़ी का काम भी नजर आ रहा है और सामने कुछ सीटिंग अरेंजमेंट भी बहुत बढ़िया किया हुआ है लाइटिंग व्यवस्था भी बहुत --

और बहोत बड़े बड़े पेड़ नजर आ रहे हैं और सामने एक पंप --

ये एक रूम नजर आ रहा है मुझे एक सामने छोटा सा पेड़ भी नजर आ रहा है और एक टेबल भी नजर आ रही है सामने एक जाले भी नजर आ रही है और सामने बटन --

सामने बहुत एक ट्यूबलिफ नजर आ रही हैं। सामने --

मेरे सर्दी पड़ रही है और हमें एक चक्कर में बीकानेर की स्कूल आई है बीकानेर कहां है पता नहीं मुझे तो।

यहां बहोत बड़ी एयरटेल की डिश दिखाई दे रही है और एक कैलेंडर दिखाई दे रहा है और फैन भी दिखाई दे रही है बहोत सारे सामान भी दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर बेसिन दिखाई दे रही है यहां पे बहुत सारा समान ऐसे वैसे भी दिखाई दे रहा है सीढ़ियां भी दिखाई दे रही है यहां बहुत सारा समान भी दिखाई दे रहा है जोकि बहुत ही मस्त लग रहा है।

मुझे एक शॉप नजर आ रही है जिसके अंदर गिफ्ट पैकिंग और की जाती है और सामने कुछ वॉचेस पड़ी हुई है सामने --

भी नजर आ रही है और सामने कुछ बैग्स भी नजर आ रहे हैं और कुछ गिफ्ट्स नजर आ रहे हैं और सामने बहोत सारा सामान पिकिंग किया हुआ नजर आ रहा है।